यह तस्वीर एक घर की है जिसमें दो पिलर्स नजर आ रहे है साइड में एक खेत है जिसमें काफी सारे पेड़-पौधे लगे हुए है पीछे एक बड़ा सा पेड़ है एक बिजली का खंबा है जीसमें काफी सारे तार लगे हुए हैं।

एक लड़का बीचो-बीच खड़ा हुआ है जिसने लाइनिंग क-की टी-शर्ट पहन रखी है और एक डंडा भी उस कीचड़ मे लगा हुआ है।

ये तस्वीर एक बड़े से गार्डन की हैं जिसमें काफी सारे घाँस फूस लगी हुई हैं एक घोड़े और आदमी का स्टचु भी बना हुआ हैं इस के पीछे काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और कुछ स्ट्रीट लाईटस भी लगी हुई हैं ।